ऊपर लाइट जलती हुई दिखाई दे रही है पीछे टावल टंगे दिखाई दे रहे हैं।

और भी चीजे दिखाई दे रही हैं साम साइड में काफी पोस्टर भी दिखाई दे रहे है सफेद दीवार भी दिखाई दे रही है।

यहां पे एक बस स्टॉप दिखाई दे रहा है।